ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसकी छत दिखाई दे रही हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो की नीले रंग का उसपे कुछ लिखा हुआ है नीचे की तरफ मीटर में लाइट जल रही हैं ऊपर छत दिखाई दे रही --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

यहाँ पर एक मन्दिर दिखाई दे रहा है मन्दिर पर पिलर लगे हुए हैं जिस पर आकृति बनी हुई है नीचे रेलिंग दिखाई दे रही हैं रेलिंग पर भी कुछ आकृति बनी हुई है जो की पीले रंग की हैं नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है दीवार दिखाई दे रही हैं दीवार सफेद रंग की हैं जिस पर खिड़कियां लगी है खिड़कियों पर काँच के शीशे लगे हुए हैं।

पेड़ों की टेहनियाँ दिखाई दे रही हैं नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है पुल पर एक आदमी बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो की रंग-बिरंगे अअ पिलर से बनी हुई है जिस पर कुछ लाल रंग की दीवार दिखाई दे रही हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है वह लाल रंग से लिखा हुआ है ऊपर मन्दिर के शेप की आकृति बनी हुई है ।

यहाँ पर एक फर्श दिखाई दे रहा है जो की सीमेंटेड है दीवार दिखाई दे रही है दीवार पर सफेद रंग की टाइल्से लगी हैं।